बहुत अच्छा दिख रहा है।

और इस ब मैदान में बहुत ज्यादा --

पेड़-पौधा है पहाड़ भी है जो --

और इस बजार में --